basics of layers और password encryption pdf पर libreoffice draw के spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में आप layers के मूल तत्वों के बारे में सीखेंगे
आप यह भी सीखेंगे कि password encryption प्रयोग करके draw फाइल को कैसे संरक्षित करें
इसे pdf की तरह कैसे export करें
यहाँ हम अपने operating system में प्रयोग कर रहे हैं ubuntu लिनक्स version 1004 और libreoffice suite version 334
अब route map file खोलते हैं
layers क्या होती हैं layers पारदर्शी शीट्स होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं
प्रत्येक draw file की तीन layers होती हैं
default रूप से layout layer दिखती है
यह वो है जहाँ हम अपने ज़्यादातर graphics बनाते हैं
control layer controls elements जैसे buttons और forms को संचित करने में प्रयोग होता है
dimensions layer जटिल drawings के लिए डायमेंशन यानि परिमाण लाइनें या मेज़रमेंट यानि नाप की लाइनें दर्शाने में प्रयोग होती है
उदाहरणस्वरूप घर की drawing में दीवारों की ठीक नाप विद्युत के तारों की स्थिति और अन्य शामिल होना चाहिए
अब तीन नक़्शे print करते हैं जो घर से school तक का रास्ता दिखाते हैं
इन्हें map 1 map 2 और map 3 कहते हैं
map 1 उस क्षेत्र में सारे सीमाचिह्न दिखाता है
map 2 में दोनों lakes stadium और commercial complex को छोड़कर सारे objects दिखाते हैं
map 3 में park को छोड़कर सारे objects दिखाते हैं
क्या हमें ये दिखाने के लिए तीन अलग नक़्शे बनाने की ज़रुरत है
नहीं draw layers की मदद से इसका समाधान देता है
इस प्रकार जानकारी की बहुत सी layers के साथ नक़्शे की केवल एक file हो सकती है
हम एक draw पेज प्रयोग करके layers के संयोजन को print कर सकते हैं या देख सकते हैं
add routemap पर कुछ layers जोड़ते हैं
layout layer पर click करें
right click करें और insert layer चुनें
insert layer dialog box दिखता है
name क्षेत्र में layer four type करें
आप अपनी drawing से सम्बंधित कोई भी शीर्षक या विवरण जोड़ सकते हैं
visible और printable boxes पर टिक करें
dialog box से exit करने के लिए ok पर click करें
एक बार फिर layout layer पर click करें
draw पेज पर नक़्शे को चुनें और इसे ungroup करें
अब lakes lakes को चुनते हैं
shift की दबाएं और stadium और commercial complex चुनें
आगे right click करें और cut चुनें
फिर layer four layer पर click करें और उन्हें paste करें
ये layout layer की तरह ही समान स्थितियों में pasted किये जाते हैं
एक बार फिर layer four पर click करें
context menu को देखने के लिए right click करें और modify layer चुनें
modify layer dialog box दिखता है
box visible को अनचेक करें ok पर click करें
layer four में objects ज़्यादा layer तक नहीं दिखते
objects physically उपस्थित हैं लेकिन नहीं दिखते हैं
layout layer पर click करें अगर टैब नही दिखती तो बाँया arrow button तब तक दबाएं जब तक layout layer न दिख जाये
हमारे पास हमारा map 2 है उसी तरह से हम map 3 भी बना सकते हैं
इस tutorial को रोकें और यह नियत कार्य करें
घर से school campus तक के दो रास्तें बनाएं
routemap drawing में प्रत्येक मार्ग अलग layer पर बनाएं जिससे कि उन्हें एक ही मार्ग दिखाने वाले दो अलग नक्शों के route में printed किया जा सके
अब सीखते हैं कि file को pdf में कैसे export करें और अपनी draw file को password से संरक्षित कैसे करें
पहले routemap draw file को pdf की तरह सेव करते हैं
main menu से file चुनें और export as pdf पर click करें
pdf dialog box दिखता है
पहले general विकल्प देखते हैं
general टैब पर click करें
range में all चुनें जैसे कि हम draw file में सारे पेजेस को pdf में बदल रहे हैं
images में हम jpeg compression चुनेंगे
यह अधिकतम सामान्य format है जो compression यानि दबाव के लिए प्रयोग होता है
आगे initial view टैब पर click करें
हम dialog box में प्रदर्शित default values ही रहने देंगे
tab links tab पर click करें
हमने draw file में links प्रविष्ट किये होंगे
दोबारा links के लिए default values को set रखते हैं
अब pdf document को संरक्षित करने के लिए password असाइन करते हैं
ऐसा करने के लिए security टैब पर click करें
set open password button पर click करें
set open password dialog box दिखता है
password क्षेत्र में कोई भी password type करें जिसके साथ आप अपनी file संरक्षित करना चाहते हैं
मैं मेरे password में protect101 set करुँगी
confirm क्षेत्र में मैं अपना password protect101 दोबरा type करुँगी ok पर click करुँगी
आगे document को print या रूपांतरित करने के लिए अनुमति password set करते हैं
set permission password button पर click करें
password क्षेत्र में अपनी पसंद का password type करें मैं type करुँगी protectagain0
confirm क्षेत्र में मैं password protectagain0 दोबारा टाइप करुँगी और ok पर click करुँगी
ध्यान दें कि printing और changes के लिए अनुमतियाँ अब सक्रीय होती हैं
यह हमेशा अच्छा अभ्यास है
printing में not permitted विकल्प चुनें
अगर सही password दिया गया है the pdf printed किया जा सकता है अन्यथा printed नही किया जा सकता
changes में not permitted विकल्प चुनें
अगर सही password दिया गया है the password एडिट किया जा सकता है अन्यथा रूपांतरित नहीं किया जा सकता
अब नीचे वाले export button पर click करें
export dialog box दिखता है
बाएं panel से places में उस location पर click करें जहाँ आप अपनी file सेव करना चाहते हैं मैं desktop चुनूँगी
file type में pdfportable document format पर click करें
और save button पर click करें
draw file pdf file में बदल गयी है और desktop सेव हुई है
अब desktop पर जाते हैं
desktop पर routemap pdf file पर doubleclick करें
enter password dialog box दिखता है
password क्षेत्र में गलत password protect111 type करें
unlock document button पर click करें
आप ध्यान देंगे कि password क्षेत्र क्लियर हो गया है और हमसे दोबारा password प्रविष्ट करने के लिए पूछा जाता है
password क्षेत्र में सही password protect101 type करते हैं
unlock document button पर click करते हैं pdf file खुलती है
हमने अपनी draw file को pdf में बदल लिया है और सफलतापूर्वक passwordसंरक्षित कर लिया है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
यहाँ हमने सीखा layers के मूल तत्व
draw file को pdf में कैसे बदलते हैं
password encryption प्रयोग करके इसे कैसे संरक्षित करते हैं
यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है
routemap file का एक अन्य pdf बनाएं
pdf dialog box में initial view विकल्प को बदलें
देखें क्या होता है
user interface के लिए सारे विकल्पों को जाँचें
permission passwords set करें
इस pdf को print करें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
अधिक जानकारी के लिए कृपया contact at spoken hyphen tutorial dot org पर लिखें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
यह it it आर डी के आई सी टी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता mission द्वारा समर्थित हैं